यह किसी फंक्शन वाले जगह का फोटो है जहां पर एक बड़ा सा किसी महल के जैसे सजावट किया गया है तथा किलों के जैसे सजाया गया है।

इसके बाहर बहुत सारे लोग एक जगह इकट्ठा हुए हुए नजर आ रहे हैं।

वहां पे कुछ व्यक्ति बैठे हुवे नजर आ रहे हैं इनके पीछे एक छोटा सा झोपड़ी भी नजर आ रहा है।

इस फोटो में एक बड़ा सा बिल्डिंग दिखाई दे रहा है।

बहुत से रंग बिरंगी लाइटे लगी हुई है तथा एक बड़ा सा बैनर भी लगा हुआ हैजिस पर एच _आर ग्रीन लिखा हुआ है।

नीचे छोटा सा पंडाल बना हुआ है जिसके अंदर कुछ लोग नजर आ रहे हैं।

कुछ कुर्सियां भी नजर आ रही है। साइड में कुछ बाइके खड़ी है।

इस फोटो में कुछ मंदिर नजर आ रहे--

बाहर एक छोटा सा पंडाल बना हुआ है जिसपर झालर तथा रंग बिरंगे फूल लगे हुए है तथा लाइटें भी लगी हुई है।

इस आदमी को ब्लू कलर के कपड़े से ढका हुआ है तथा सामने आईना भी लगा हुआ है।

यह एक पेट्रोल पंप का फोटो है जहां पर पेट्रोल और डीजल के दो नोजल दिखाई दे रहे हैं।

प्लास्टिक के सामान भी नजर आ रहे हैं।

तालाब से कुछ ही दूरी पर बहुत सारे पेड़ पौधे भी नजर आ रहे हैं।

हमने रंग बिरंगी फूल भी रखे हुए हैं तथा माइक और माइक स्टैंड भी नजर आ रहा है।

यह किसी रूम का फोटो है यहां पर सामने दो सोफा नजर आ रहा है जिसका रंग भूरा है।

दीवाल पर एक छोटा सा पोस्टर भी चिपकया हुआ है।

कुछ हरे भरे पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं और सामने एक बड़ा सा गाड़ी भी दिखाई दे रहा हैं।

सामने एक स्कूटी भी नजर आ रहा है तथा एक व्यक्ति भी खड़े है।

यहां पर दो तीन मंदिर नजर आ रहे हैं जिसे सफेद रंग से पेंट किया गया है।

बगल में एक पोस्टर भी नजर आ रहा हैं जिस पर रामनेश्वर बाबा बृजनाथ धाम लिखा हुआ हैं।

इस फोटो में एक बड़ा सा तालाब नजर आ रहा है जिसके ऊपर एक ब्रिज बना हुआ है।

अंदर लाइटें लगी हुई हैं तथा रंग बिरंगे गुब्बारे भी लगे हुए है।

हॉल के बाहर कुछ छोटे-छोटे गमलों में कुछ पौधे भी लगे हुए हैं।

यह एक चप्पल जूते के दुकान का फोटो है जिसके बाहर खादिम्स लिखा हुआ है।

इस दुकान में कांच वाला गेट भी लगा हुआ है जिस पर एक छोटा सा पोस्टर लगा हुआ है जिसमें फ्लैट पच्चास प्रतिशत ऑफ लिखा हुआ है।

इस फोटो में दो तीन गोदरेज नजर आ रहे हैं।

नीचे लाल रंग का एक चप्पल नजर आ रहा है।

बाहर दो टेबल भी हैं तथा लाल रंग की कुर्सियां भी रखी हुई है।

माला और माथे में फूल भी लगा रखा है।

नीचे हरे रंग का मार्बल भी बिछाया गया हैं।

दुकान के अंदर कुछ लाइटें लगी हुई है।

इस फोटो मे एक बड़ा सा तालाब दिखाई दे रहा है जिसे चारों तरफ से घेर दिया गया है।

सामने कांच वाला कवर लगा हुआ है।

होटल में सामने की ओर एक दरवाजा भी दिखाई दे रहा है।

एक बड़ा सा लगा हुआ है और उस पर बरनवाल सेवा सदन लिखा हुआ है।

सामने तीन कुर्सियां भी नजर आ रही हैं जोकि लाल रंग का है।

दो कुर्सिया पर दो बच्चे बैठे हुए नजर आ रहे है।

ब्लू और सफेद रंग के कुछ गुब्बारे नज़र आ रहे हैं।

टेबल और कुर्सियां भी लगे हुए हैं।